ये दो मंजिला ऑफिस दिखाई दे रहा है।

इसके आस-पास बहुत साफ़ सफाई दिखाई दे रहा है । एगो आदमी खड़ा है । एगो लेडिस बच्चे को लिया हुआ है ।

उसके उस साइड घर भी है।

और कुछ लेडीज़ भी हैं जो कुछ लेके पर्दा जैसा खड़ा है । बोर्ड जैसा पीछे सर भी है मास्क लगाए हुए ।

ऑरेंज जैसा है कागज भी है ।

फूल पौधे लगे हुए हैं दो आदमी खड़े हैं | लाइट है यहाँ |